का रंग काला नजर आ रहा है छत में लाइटे दिखाई दे रही --

यहाँ हाल कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है कुर्सियों का रंग लाल नजर आ रहा है सामने दीवार दिखाई दे रही है दीवार में कांच लगे हुए हैं कांच का रंग साफ़ --

नजर आ रहा है नीचे जमीन का रंग भी काला दिखाई दे रहा है आधे फर्श का रंग --